पौधा का रंग हरा है।

मेज टेबल और फूल पॉट भी रखा है।

फोटो में हमको एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

घर का बाहर मे बहुत ज्यादा अन्य लोग खड़ा है।

दुकान का अंदर में बहुत ज्यादा कार्टून बॉक्स --

अंदर में एक आदमी भी खड़ा है।

बहुत सारा वायर और बम्बू भी रखा है।

सामने में बहुत ज्यादा घर दिख रहा है।

ये फोटो में हमको बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

टेबल का ऊपर में पानी बोतल और ग्लास भी रखे हैं।

में लोग भी खड़ा हुआ है।

अंदर में बहोत ज्यादा सामान रखा है।

अर्पित कार्पेट का रंग हरा है।

ये फोटो में हमको बहुत ज्यादा आदमी लोग दिखाई दे रहा है।

झूला को चैन से लटकाया हुआ है।

मंदिर दिखाई दे रहा है।

बोर्ड में प्लेट एंड बॉल लिखा है।

दुकान का बाहर में दो आदमी चेयर में बैठा है।

एक स्कूटी भी रखे हैं।